ये एक मंदिर के सामने से लिया गया फोटो है यहाँ पीछे मंदिर का सबसे बड़ा ऊपर से बना हुआ है।

पीछे क्लासरूम सब दिख रही है ऑरेंज कलर का बॉर्डर बना हुआ है निचे वाइट कलर का --

तीन साइकल खड़ी है पीछे साइड भी एक साइकल है ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

बीच में थोड़ा सा कचरा इकट्ठे है बीच में पूरा रेट मिट्टी सब है साइड में थोड़ा-थोड़ा घास है फैले हुए है।

यह फोटो सैलून में लिया गया है |

बोर्ड का नाम छुप गया है पेड़ के पत्तियों और डालियों से ये ब्लैक एंड वाइट फोटो लिया गया है उसपे गार्डन दिख रहा है बड़ा सा।

ये फोटो खेत से लिया गया है यहाँ पे बोहोत सारे मिट्टी और भोत सारे पेड़ दिख रहा है।

सब पेपर को काट रहे हैं पेपर को काट के कुछ न कुछ बना रहे हैं सब ने पेंसिल किसी ने कैंची हाथ में पकड़ा हुआ है।

यहां एक शॉप का फोटो दिखाई दे रहा है ये एक मॉल का फोटो दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहुत सारा कपड़ा टंगे हुए है।

ये एक होटल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारा सजावट किया गया है।

एक स्टेशनरी शॉप है यहाँ इस पे दुकान है बहुत सारे बुक पेंसिल-पेंसिल दिखाई दे रहे हैं टेप फेविकोल सब दिखाई दे रहा है।